सामने एक बहुत बड़ा जंगल है उचाई पर है जहाँ पर कुछ मकान बने हुए है।

एक बहोत बड़ी मस्जिद बनी हुई है एक छोटी मस्जिद बनी है एक बड़ा सा महल है इसमें टाइल्स लगे हुए है पेड़-पौधे दिख रहे हैं आस-पास बिल्डिंगे हैं।

और वाइट कलर पुता है संगमर्मर लगा हुआ है तीन-चार गुम्मट हैं ऊपर और चार उसके खंभे हैं।